उसके सामने एक डेस्क रखा हुआ है डेस्क में कंप्यूटर चल रा है और की शॉप --

ब्लैक कलर का फोन है और रेड कलर का पिलो है बेड शीट है वो रेड है और एक स्कॉफ है जो ब्लैक है।

और उसमें आपस में वेडिंग कर रखी है ऊपर आसमान में व्हाइट कलर के बादल दिख रहे हैं और उसकी परछाई पानी में आ रही है।

साइड में गेट है जो अंदर आने के लिए है और उसके सामने बड़े-बड़े स्टोर हैं।

होटल में वाइट कलर्स के बड़े बड़े लगे हैं उसके साइड में रेड कलर के ऊपर बहोत बड़े बड़े बल्ब्स हैं।

वो कॉफी पी रहा है उसके सामने दूसरा आदमी है जो हाथ में काफी लिए हुए है और एक आदमी नीचे सैंडविच रखा हुआ है।

जिन्होंने एक पिंक कलर की और रेड कलर की साड़ी पहन रखी है और उसके सामने कुछ फूलों की माला है।

मिठाई की शॉप में कुछ मिठाइयां हैं जो कि अंदर है और कुछ मिठाइयां है जो कि स्टोर के ऊपर रखी हुई हैं।

ये एक सैलून है सैलून में एक आदमी शीशे में अपनी फोटो क्लिक कर रहा है और उसके साइड में एक आदमी फोन चला रहा है।

और कुछ चेयर्स रेड कलर के हैं और कुछ चेयर्स हैं जोकि येलो कलर के हैं साइड्स में एक पेप्सी का बहोत बड़ा फ्रिज है।